मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा टीना का घर दिख रहा है।

और सफेद रंग का बदला भी दिख रहा है।

रास्ता के सामने एक कुत्ता भी दिख रहा है।

अंदर में एक ए_टी_एम का मशीन भी दिखाई दे रहा है।

दूर में धूप भी दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का आसमान भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक ऑटो गाड़ी भी दिख रहा है।

घर के बीच में बहोत सारा पेड़ पौधा भी दिख रहा है।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

और सामने बड़ा सा फील्ड भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में पिंक कलर का बैनर में इंग्लिश से कुछ लिखा हुआ है।

साइड में बड़ा सा चर्च भी दिख रहा है।

बहुत सारा फैन भी टंगा के रखा है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रही है।

व आसमान भी दिखाई दे रहा है।